सड़क के साइड मे एक आदमी चेयर और एक काठ की टेबल बिछा के दाढ़ी बना रहा है और एक आदमी बैठ के बनवा रहा है दाढ़ी बनाने का सारा सामान रखा है।

ये एक चांदी की दुकान जैसी लग रही है सामने मे लाल रंग की दरी बिछी है दरी के ऊपर लम्बा लम्बा चांदी का पिलर जैसा रखा हुआ है।

--पीछे एक काला रंग का सोफा बिछा हुआ है साइड मे बहोत सारी सामान् रखा हुआ है।

खूबसूरत सी एक तस्वीर है। पहाड़ी अँचल है। पहाड़ के ऊपर से झरना बहते हुए नीचे की तरफ आ रहा है।